शॉप है जिसे हम कई प्रकार का नाम दे सकते हैं बट अभी फिलहाल यह कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो इसे हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं।

छवि है इसे हम देख सकते हैं न्यू जिस ग्रुप मे फैला हुआ है जो की अच्छा है योग्य लायक है।

काफी अच्छा भी नजर आया से हूं।

मतलब दो जोड़ो का मिलन--

ए_टी_एम है और अभी तो फिलहाल ट्रेंडिंग वन मे कोटक महिंद्रा बैंक ही चल रहा था।